गुंबट में वहां एक मंदिर बोहोत ही सुंदर रंगों से डेकोरेशन किया गया है जिसमें हरे नीले लाल गुलाबी कलर है | पीछे पेड़ और बिजली के तार भी दिखाई दे रहे --

कुर्सियां रखी हुई हैं और पेंटिंग और कैलेंडर दिखाई दे रहा है।

ऊपर का छत भी दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत सारे पाउच रखे हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ टमाटर पके हुए हैं। कुछ टमाटर हरे नजर आ रहे हैं। साथ-साथ जमे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बोरी भी दिखाई दे रही है और त-तोलने वाला तराजू भी नजर आ रहा है।

बिजली के खंबे में नजर आ रहे हैं जिसे तार इधर से उधर जाते हुई दिखाई दे रही हैं खुला आसमान दिखाई --

इस फोटो में एक कांच की अलमारी दिखाई दे रही है जिसमें उम कुपियो में भरा हुआ रंग बिरंगा पानी रखा हुआ है। काफी सारे बल्ब नट बोल्ट और कोक बैक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।